अच्छे-अच्छे चेयर लगे हैं अल अलमारी है।

बगल में पेड़ पौधे है।

सामने एक खूबसूरत सा नजारा हरे काले पीले रंग की बगल में पेड़ पौधे।